उसके पीछे एक प्लेटफार्म लगा हुआ है प्लेटफार्म की छत नीले कलर की है।

और बाइक के पास मे एक सफेद कलर की कार खड़ी--